लाइट लगे हुएं दिखाई दे रहें--

किड्स एंड फैमिली कार्स हैं जहां पर बच्चों के लिए छोटे छोटी कार्स वैगैरह मिलती हैं।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं गेट की परछाई पर साइड में पेड़ लगा हुआ है एक।

यह एक कंपनी दिख रही है जहाँ कांच वांच का कारखाना जैसा दिख रहा है डोर खिड़की वगैरा के जहां कांच बनते हो।

कुछ लड़के उधर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

टेबल ले के जा रहा है वो स्कूल बस दिखाई दे रही है मोटरसाइकिल पर लड़का उधर जा रहा है बच्चों के हाथ में तिरंगे हैं।

अ एक आदमी ऊपर खड़ा हुआ दिख रहा है टेबल वगेरा लाइट्स दिख रही है हेलमेट वगैरा इधर भी एक आदमी कपड़े से पोछ रहा है।

और मगा दिख रहा है टंकिया दिख रही है बोरियो में पाउडर भरा हुआ है सफेद पाउडर --

इधर भी गेरुवा गेरा कुश्ता हैं उसमें कुछ कपड़ा दिख रहा है हरे पन्नी जैसी--

और बलून से सजाया गया है उसे पंखा लगा हुवा दिखाई दे रहा हैं पोट्स लगे हुए हैं फ्लावर के।

कम्प्यूटर ऑन दिख रहे एक कम्प्यूटर को छोड़ के सी_पी_यू कीबोर्ड वगैरा दिख रही है कुर्सियां अन्दर की तरफ दिख रही है।

में भी भरा हुआ कुछ सामान है इधर एक

और जैसे फ्लावर्स के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं एक बादल--

इधर भी कुछ ख भंगार जैसा पड़ा हुआ है।

पंप जैसा स्टैंड दिख रहा है कुर्सी पर कपड़ा है।

झूला है जिसपे एक आदमी फोन पे बात कर रहा है बैठ के नाइट की फोटो है पास में गार्डन दिख रहा हैं।

यह एक कोचिंग क्लासेस लग रहा है जहां एक टीचर --

अ अंदर एक डस्टबिन दिख रहा है लाइट्स भी दिख रही है।

बाहर भी एक बाल्टा रखा हुआ है माक्स पहना एक आदमी जा रहा है।

यह एक खंडर जैसा हवेली दिख रही है जो टूटी फूटी दिख रही है।

यह एक जिम दिख रही है जहां पर कई प्रकार की मशीने है जिमर फीचर्स है स्लिपर्स है।

परफॉर्मेंस का कुछ विद्या इंस्टिट्यूट परफॉर्मेंस का--

अ वोल क्या बोलते हैं बालटा रखा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है।